हरे-भरे पेड़-पौधे हैं यहाँ पर भगवान के पूजा करने वाले हैं बहुट अच्छा लग रहा है

पेड़ हरे-हरे पेड़-पौधे देखने में बहुत अच्छे लग रहे हेय ए---